और यहाँ पे बहुत ही धुप पड़ने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा चमक रही ये देखने मे अच्छी लग रही है और इनका जो शेडो है वो मिट्टी पे नज़र आ रहा और वो देखने मे और भी ज्यादा अच्छी लग रही है और ए बहुत ही --

और ऊन लोगो को बहुत ही मालाये पहनाइ गई है प्रशाद रखी हुई है और उनको एक कार्पेट के उपर रखा हुआ है और वो जो कार्पेट है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर कलर की डिजाईन की गई है।

एक बड़ीसी झिल है यहा पे दो लड़के है जो सर नीचे करके खड़े हुए।

और सामने उन्हे कुछ पैकेट फेका हुआ है जोकि येल्लो कलर की है और एक बड़ीसी पत्थर के उपर वो पत्थर के उपर बहुत ज्यादा काई जम चूका है वो पानी फेकने के वजह से और पानी का जो कलर है वो पूरा ही व्हाइट कलर का लग रहा है और आसपास कोई इन्सान नज़र नहीं आ रहा है। और ये अच्छी लग रही--

ग्राउंड है जहा पे बहुत सारे जैसे की भीड़ जमी हुई है यहा पे कुछ लोग बैठे हुए कुछ लोग खड़े हुए है यहा पे एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसमे साइकल करता हुआ अपना स्टँड रखे वो --

एक ने ब्लॅक कलर के कपड़े पहने हुए है एक ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने है ऊपर बहुत सुंदर डेकोरेशन हुआ है नीचे का जो फर्श है वो पूरा ग्रीन कलर की है और यहाँ पे लाइट जल रही है ये रात का समय इसलिए यहा पे --

पहाड का जो बॅकग्राउंड है थोड़ीसी धुंदली नजर आ रही है देखने में बहुत सुंदर है।